बहुत ही बढ़ियां है देखने में भी काफी सुन्दर लग रहे हैं और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे रेड कलर का बिछाये हैं जो बहुत ही बढ़ियां देखने में बहुत ही --

और मकान घर है यहाँ पर बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स है और उजरा रंग से पेंट किये हुए है जो की देखने में बहुत ही अच्छा --

जो देखने में बहुत अच्छा लगता है और बगल में घास है जो हरे कलर का है जो देखने में बहुत अच्छा लगता है बहुत ही बढ़ियां है।